बोर्ड आ रखा हुआ है बहुत ही सुंदर जो है बोर्ड लगाया हुआ है फर्नीचर हाउस इस पे--

गाडी एक पार्क की हुई है सामने दो बाइक जो हैं लगी हुई हैं।

ये जो पिक्चर है एक कार गैरेज की पिक्चर है।

कार गैरेज जो है बहोत ही बड़ा है इसको गैरेज के साथ सफाई करने के लिए दिया हुआ--

पिक्चर जो है दुर्गा जी की पिक्चर है इसमें दुर्गा माता जी की --

पीछे जो बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं गेट --

बहोत ही पुराने बहोत ही बड़ी इमारत है।